ये किसी कपड़े को प्रेस करते हुए दिखाई दे रहा है।

और इसमें फैन लगे दिखाई दे रहे हैं।

और उसके बाहर शॉप के बाहर गेट पे बाल्टियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें एक साइकल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

गाड़ी की डेकोरेशन की हुई दिखाई दे रही है जिसपे रंग बिरंग के फूलोस सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

साथ में डॉक्टर वो दिखाई दे रहा है उन्होंने मास्क पहना हुआ दिखाई दे रहा है।

संस्कृति प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी बाइक और स्कूटरी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और इसमें बहुत से पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पड़ते दिखाई दे रहे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे एक इसमें एक लाइट लगी हुई चल रही दिखाई दे रही है।

ये पिक किसी ए_टी_एम के बाहर की पिक दिख रही है जिसके बाहर --

जिसके पीछे बीच में एक सीढ़ी दिख रही है।

कुछ बॉक्स पड़े दिखाई दे रहे हैं जिसपे--

ये किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप दिख रही है जिसमें--

खिलोनों के बॉक्स है जो हेलीकॉप्टर वगैरह--

अलमारी की पिक दिख रही है जिसके ऊपर लकड़ का टेबल अलमारी लग रही है जिसके ऊपर शीशे का --

ध्वजा लगा हुआ है फिर इसके अंदर--

और बाहर जो रोड जो है वह साफ सुधरा दिखाई दे रहा है।

और यहाँ प इसमें एक बाइक दिखाई दे रही है।

इस पिक में एक रोड दिख रहा है बहुत साफ़ सा रोड दिखाई दे रहा है।

कोई ये पिक किसी पेट यूनिवर्सल की पिक दिख रही है जहाँ पे--

फिश एक्वेरियम मिलता है दिख रहा है।

रूम की पिक दिख रही है जिसमें ब्लैक कलर --

एक एल_सी_डी कंप्यूटर लगा हुआ है एक लैपटॉप पर रखा हुआ दिखा रहा है।

एक न्यू बुलेट मोटरसाइकल दिख रहा है और एक मीडियम सा दिख रहा है।

ये किसी बच्चों के स्कूल के--

बोर्ड दिख रहा है सामने से और इसमें छोटे-छोटे बच्चों के लिए गुड़िया बनाई हुई है और--

और इसमें कोको-कोला की ही फ्रिज दिख रही है उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक वगेरह रखी हुई है और इसमें--

और इसमें एक एल_सी_डी लगी दिखाई दे रही है।

कि एक स्टेशन पर एक ट्रैन खड़ी हुई दिखाई दे रही है और एक ट्रैन जाती हुई दिखाई दे रही है।

साथ हल हल लगा हुआ है जिसमें--

जो कि इसके साथ एक पेड़ दिखाई दे रहा है और--

एक हेलमेट भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें एक--

और इसमें एक येलो कलर की लाइट दिख रही है और इसमें--

ये किसी स्कूल का संस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है।

ये किसी हम्म मार्ट की पिक दिख रही है जिसपे ब्लैक बोर्ड रेड बोर्ड पे लिखा हुआ है बालाजी मेगा मार्ट उसके--

एक ए_सी वो दिखाई दे रहा है और इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ओप्पो और एफ नाइनटीन एस और रियलमी का--

ये किसी होटल के बाहर की पिक दिख रही है जो कि जिसमें कि--

दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कुर्सियों पे और--

यह एक यह पिक एक किसी आटा चक्की की पिक दिख रही है जिसमें एक--

एक उसमें फैन लगा हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें एक--

ये कोई बिल्डिंग दिख रही इस पिक में एक बिल्डिंग दिख रही है इसमें एक बाहर बहुत सारे मोटरसाइकिल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।